साइड में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं थोड़ी बहुत घास उगती भी दिख रही है लाइट के दो --

ऊपर पन्नी डली हुई है नीले कलर की।